और एक बड़ा सा रास्ता सामने दिखाई पड़ रहा है बोहोत सारे लोग बैठे हुए भी है।

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और एक पोस्टर भी लगा दिखाई दे रहा है।